सुबह में शाम में इसे पीने में बहुत ही अच्छा लगता है बहुत सारे लोग इसे पीना पसंद करते हैं और सुबह शाम पीते हैं और कॉफ़ी पीने से दिमाग तेज बनता है और काफी अच्छा लगता है पीने के बाद ।

यह एक मस्जिद है और यह मस्जिद काफी बड़ा है इस मस्जिद में बहोत सारे मुस्लिम धर्म के लोग आते हैं नमाज पढ़ने के लिए यहाँ पे लोगो --

यहाँ पे बोहोत सारे खेल खेले जाते हैं। यहाँ पे लोग क्रिकेट फुटबॉल हॉकी और भी बोहोत प्रकार के खेल खेलना पसंद करते हैं। यहाँ पे लोग टहलने भी आते हैं और यहाँ पे काफी अच्छा लगता है।

सारे लोग यहाँ पे आते हैं घुमने के लिए नदी में नदी में लोग नहाते हैं नदी की पानी से बहुत सारे किसान अपने फसल की सिंचाई भी करते हैं और --